ये इतना बड़ा ग्राउंड है इसमें सजावट कर रखी है।

और यहां पे शर्ट वगैराह भी साइड में है।

ये फल फ्रूट की रेहड़ी है इसमें केले रखे हैं कीवी रखें अनार है सेब है।

एक टेबल रखा है सामने जो बड़ा टेबल है।

और ये जो लकड़ियां है अय अंदर तो पतली पतली खड़ी लकड़ियां बाहर रखे बड़े बड़े फट्टे--

दो बाल्टियां हैं रस्सी में टंगी हुई जो नीचे गिरी हुई हैं और सामने खेत और पेड़ हैं इतने सारे।

बिल्डिंग सी बना रखी है आश्रम है ये इसका गेट खुला हुआ है।

फूलों से इन्होंने गेट सजा रखा है।

और सामने एक झूला लगा हुआ है।

ये सैलून है इसके बाहर एक आदमी फोटो खिंचवा रहा है खड़ा होके--

शेविंग वगैरा कर रहा है दो कुर्सी पे बैठा आ--

यहाँ पे सोफ़े रखे हुए है सोफ़े पर तकियां राखी है टेबल हैं।

ये मंदिर है श्याम बाबा का--

यहां पे बच्चे सारे बैट बॉल खेल रहे हैं लड़के यहां पे--